ये एक फोटो दु दुकान है जिसमें से पिक्चर खिंचवाने बहुत कुछ आए हैं कुछ लोग खींच रहे हैं फोटो वगैरह।

ये एक रेस्टोरेंट है और बहोत ही अच्छे रेस्टोरेंट है यहां बहोत जन आते हैं खाना खाने के लिए बहोत अच्छे खाने मिल जाते हैं यहां जैसे की बिरियानी --

और बहोत जन आए भी है खाने के लिए यहां और यहां का टेस्टी बहोत लगता है और बहोत जन आते भी हैं अच्छे लगते हैं बोलते हैं।

ये एक पार्क है इस गेट में बहोत जान आ रहे हैं जा रहे हैं बच्चे लोगन भी है अंदर जा रहे खेल रहे हैं।

जिनको आरती सबके लिए देना पड़ता है प्रसाद देने पड़ते हैं।

ये एक दुकान है राशन दुकान जिसमें बहोत समान मिल जाते है जैसे कि तेल मसले उसले--

पढ़ाई के लिए एक काबिल किए जाते हैं उन लोग के अच्छे परसेंटेज आए इस कारण से टीचर उनको अच्छे से पढ़ाते हैं।

यहां अच्छे से मसाजेस हो जाते हैं फेस वॉश हो जाते हैं और बहुत जन अपने अपने हेयर कट भी कराते हैं।

ये एक सजा हुआ कार है जो शादी के लिए सजाया गया है।

यहां काफी बहोत भीड़ भी है बाहर गाड़ियां वाडीया भी बहोत खड़ी हुई है अंदर भी बहोत चेयर वेयर लगे हैं।

वहां ठंडे पानी के अभी सुविधा किया गया है ठंडा पानी भरते हैं।

पच्चीस छब्बीस अगस्त बनाया जा रहा है कोचिंग में बहुत अच्छा बिल्डिंग है तीन तल्ले की है यहां सब बच्चे मिल के पढ़ने आए हैं।

बहुत अच्छासा बड़ासा दुकान हैं मार्बल की बहोत खूबसूरत--